ये सब्जी मंडी है जहां पे अनेक प्रकार की सब्जियां रखी हुई है ताजी - ताजी सब्जियां अ यहां से आप स सब्जी को मोलाए कर के खरीद सकते है कम रेट को अधिक रेट को कम रेट ओ मे बहुत सारा सब्जियां नजर आ रही है हो गया।

जिन्हे हम डाक सेवा कहते है यह हर एक पंचायत मे होता है।

यह काफी साफ सुथरा रहता है|

राशन की सामाने खाने की समान स्नैक्स वागेरा बहुत सारी चीजे उपलब्ध है।